जिसमें फूल का भी पेड़ है आम का भी सारा पेड़ हैं अच्छा होता है यह पेड़ खरीद के लगाने से।

अच्छे होते हैं और सुनें भी हैं और जाना भी चाहिए और अच्छा इस तरह घूमने में माइन्ड फ्रेश होता है अच्छा भी लगता है।

ये भी सैलून का फोटो है और ये लड़का बाल काट रहा है।

अच्छा लग रहा है किसे जैसे लग रहा है की ये सब्जी उबजी रखने के लिए डलियां है वो बैठना वाला चीज़ है।

ये आरती का समय का फोटो है जैन धर्म का।

कुछ भाषण देते हैं कुछ गाना गाते कुछ डांस करते हैं काफी अच्छा लग --